मैदान दिखाई दे रहा है उस पर हरे रंग की घास दिखाई दे रही हैं।

लोग दिखाई दे रहे हैं और सीढ़ी भी दिखाई दे रही है लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

जमीन भी दिखाई दे रही है और साइड पर एक बड़ा सा पत्थर भी दिखाई दे रहा है एक फुटबॉल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दीवार सी दिखाई दे रही है जिसका रंग पीला है।

और यहां पर बहोत सारी झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

छत दिखाई दे रही हैं नीले रंग के दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं और कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

और सोलर सिस्टम भी दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में एक--

आन दिखाई दे रहा है आसमान पर बादल छाए हुए--

और सिल्वर कलर के बहोत सारा--

वाली बोतल भी दिखाई दे रही है--

बहुत कलरफुल दिखाई दे रही हैं।